मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार
हर मन की बात से पहले देश के हर कोने से हर आयु वर्ग के लोगों से मन की बात को ले करके ढ़ेर सारे सुझाव आते हैं
आकाशवाणी पर आते हैं नरेंद्र मोदी App पर आते हैं माइगोव के माध्यम से आते हैं फ़ोन के द्वारा आते हैं रेकॉर्डेड मेसेज के द्वारा आते हैं
और जब कभीकभी मैं उसे समय निकाल करके देखता हूँ तो मेरे लिये एक सुखद अनुभव होता है
इतनी विविधताओं से भरी हुई जानकारियाँ मिलती हैं
देश के हर कोने में शक्तियों का अम्बार पड़ा है
साधक की तरह समाज में खपे हुए लोगों का अनगिनत योगदान दूसरी तरफ़ शायद सरकार की नज़र भी नहीं जाती होगी ऐसी समस्याओं का भी अम्बार नज़र आता है
शायद व्यवस्था भी आदी हो गयी होगी लोग भी आदी हो गए होंगे
और मैंने पाया है कि बच्चों की जिज्ञासायें युवाओं की महत्वाकांक्षायें बड़ों के अनुभव का निचोड़ भाँतिभाँति की बातें सामने आती हैं
हर बार जितने इनपुट्स मन की बात के लिये आते हैं सरकार में उसका डिटेल एनालिसिस होता है
सुझाव किस प्रकार के हैं शिकायतें क्या हैं लोगों के अनुभव क्या हैं
आमतौर पर यह देखा गया है कि मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को सलाह देने का
ट्रेन में बस में जाते और किसी को खांसी आ गयी तो तुरंत दूसरा आकर के कहता कि ऐसा करो
सलाह देना सुझाव देना ये जैसा मानो हमारे यहाँ स्वभाव में है
शुरू में मन की बात को लेकर के भी जब सुझाव आते थे सलाह के शब्द सुनाई देते थे पढ़ने को मिलते थे तो हमारी टीम को भी यही लगता था कि ये बहुत सारे लोगों को शायद ये आदत होगी लेकिन हमने ज़रा बारीकी से देखने की कोशिश की तो मैं सचमुच में इतना भावविभोर हो गया
ज़्यादातर सुझाव देने वाले लोग वो हैं मुझ तक पहुँचने का प्रयास करने वाले लोग वो हैं जो सचमुच में अपने जीवन में कुछनकुछ करते हैं
कुछ अच्छा हो उस पर वो अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य परिस्थिति के अनुसार प्रयत्नरत हैं
और ये चीजें जब ध्यान में आयी तो मुझे लगा कि ये सुझाव सामान्य नहीं हैं
ये अनुभव के निचोड़ से निकले हुए हैं
कुछ लोग सुझाव इसलिये भी देतें हैं कि उनको लगता है कि अगर यही विचार वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो विचार अगर और लोग सुनें और उसका एक व्यापक रूप मिल जाए तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है
और इसलिये उनकी स्वाभाविक इच्छा रहती है कि मन की बात में अगर इसका ज़िक्र हो जाए
ये सभी बातें मेरी दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक हैं
मैं सबसे पहले तो अधिकतम सुझाव जो कि कर्मयोगियों के हैं समाज के लिये कुछनकुछ कर गुज़रने वाले लोगों के हैं मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ
इतना ही नहीं मैं किसी बात को जब मैं उल्लेख करता हूँ तो ऐसीऐसी चीजें ध्यान में आती हैं तो बड़ा ही आनंद होता है
पिछली बात मन की बात में कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया था फूड वास्ते हो रहा है उसके संबंध में चिंता जताई थी और मैंने उल्लेख किया
और जब उल्लेख किया तो उसके बाद नरेंद्र मोदी App पर माइगोव पर देश के अनेक कोने में से अनेक लोगों ने कैसेकैसे इनोवेटिव आईडीईएएस के साथ फूड वास्ते को बचाने के लिये क्याक्या प्रयोग किये हैं
मैंने भी कभी सोचा नहीं था आज हमारे देश में खासकर के युवापीढ़ी लम्बे अरसे से इस काम को कर रही है
कुछ सामाजिक संस्थायें करती हैं ये तो हम कई वर्षों से जानते आए हैं लेकिन मेरे देश के युवा इसमें लगे हुए हैं ये तो मुझे बाद में पता चला
कइयों ने मुझे वीडियोस भेजे हैं
कई स्थान हैं जहाँ रोटी बैंक चल रही हैं
लोग रोटी बैंक में अपने यहाँ से रोटी जमा करवाते हैं सब्जी जमा करवाते हैं और जो नीडी लोग हैं वे वहाँ उसे प्राप्त भी कर लेते हैं
देने वाले को भी संतोष होता है लेने वाले को भी कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है
समाज के सहयोग से कैसे काम होते हैं इसका ये उदाहरण है
आज अप्रैल महीना पूर्ण हो रहा है आखिरी दिवस है
1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है
इस अवसर पर दोनों राज्यों के नागरिकों को मेरी तरफ़ से बहुतबहुत शुभकामनाएं
दोनों राज्यों ने विकास की नयीनयी ऊँचाइयों को पार करने का लगातार प्रयास किया है
देश की उन्नति में योगदान दिया है
और दोनों राज्यों में महापुरुषों की अविरत श्रंखला और समाज के हर क्षेत्र में उनका जीवन हमें प्रेरणा देता रहता है
और इन महापुरुषों को याद करते हुए राज्य के स्थापना दिवस पर 2022 आज़ादी के 75 साल हम अपने राज्य को अपने देश को अपने समाज को अपने नगर को अपने परिवार को कहाँ पहुँचाएँगे इसका संकल्प लेना चाहिये
उस संकल्प को सिद्ध करने के लिये योजना बनानी चाहिये और सभी नागरिकों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिये
मेरी इन दोनों राज्यों को बहुतबहुत शुभकामनाएं हैं
एक ज़माना था जब क्लाइमेट चंगे ये एकेडमिक वर्ल्ड का विषय रहता था सेमिनार का विषय रहता था
लेकिन आज हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनुभव भी करते हैं अचरज़ भी करते हैं
कुदरत ने भी खेल के सारे नियम बदल दिये हैं
हमारे देश में मईजून में जो गर्मी होती है वो इस बार मार्चअप्रैल में अनुभव करने की नौबत आ गयी
और मुझे मन की बात पर जब मैं लोगों के सुझाव ले रहा था तो ज़्यादातर सुझाव इन गर्मी के समय में क्या करना चाहिये उस पर लोगों ने मुझे दिये हैं
वैसे सारी बातें प्रचलित हैं
नया नहीं होता है लेकिन फिर भी समय पर उसका पुनःस्मरण बहुत काम आता है
श्रीमान प्रशांत कुमार मिश्र टीएस कार्तिक ऐसे अनेक मित्रों ने पक्षियों की चिंता की है
उन्होंने कहा कि बालकनी में छत पर पानी रखना चाहिये
और मैंने देखा है कि परिवार के छोटेछोटे बालक इस बात को बखूबी करते हैं
एक बार उनको ध्यान में आ जाए कि ये पानी क्यों भरना चाहिये तो वो दिन में 10 बार देखने जाते हैं कि जो बर्तन रखा है उसमें पानी है कि नहीं है
और देखते रहते हैं कि पक्षी आये कि नहीं आये
हमें तो लगता है कि ये खेल चल रहा है लेकिन सचमुच में बालक मन में ये संवेदनाएं जगाने का एक अद्भुत अनुभव होता है
आप भी कभी देखिये पशुपक्षी के साथ थोड़ा सा भी लगाव एक नये आनंद की अनुभूति कराता है
कुछ दिन पहले मुझे गुजरात से श्रीमान जगत भाई ने अपनी एक किताब भेजी है सेव थे स्पैरोज और जिसमें उन्होंने गौरैया की संख्या जो कम हो रही है उसकी चिंता तो की है लेकिन स्वयं ने मिशन मोडे में उसके संरक्षण के लिये क्या प्रयोग किये हैं क्या प्रयास किये हैं बहुत अच्छा वर्णन उस किताब में है
वैसे हमारे देश में तो पशुपक्षी प्रकृति उसके साथ सहजीवन की बात उस रंग से हम रंगे हुए हैं लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि सामूहिक रूप से ऐसे प्रयासों को बल देना चाहिये
जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब को सौ साल हुए थे
वे 103 साल तक जीवित रहे थे
और उनके सौ साल निमित्त बोहरा समाज ने बुरहानी foundat
ओन के द्वारा स्पैरो को बचाने के लिये एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था
इसका शुभारम्भ करने का मुझे अवसर मिला था
क़रीब 52 हज़ार बर्ड फीडर्स उन्होंने दुनिया के कोनेकोने में वितरित किये थे
गिनेस बुक ओएफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में भी उसको स्थान मिला था
कभीकभी हम इतने व्यस्त होते हैं तो अखबार देने वाला दूध देने सब्जी देने वाला पोस्टमैन कोई भी हमारे घर के दरवाजे से आता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि गर्मी के दिन हैं ज़रा पहले उसको पानी का तो पूछें
नौजवान दोस्तो कुछ बातें आपके साथ भी तो मैं करना चाहता हूँ
मुझे कभीकभी चिंता होती है कि हमारी युवा पीढ़ी में कई लोगों को कम्फर्ट ज़ोन में ही ज़िंदगी गुज़ारने में आनंद आता है
माँबाप भी बड़े रक्षात्मक अवस्था में ही उनका लालनपालन करते हैं
कुछ एक्सट्रीम भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर कम्फर्ट ज़ोन वाला नज़र आता है
अब परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं
वैकेशन का मज़ा लेने के लिये योजनायें बन चुकी होंगी
समर वैकेशन गर्मियां होने के बाद भी अच्छा लगता है
लेकिन मैं एक मित्र के रूप में आपका वैकेशन कैसा जाए कुछ बातें करना चाहता हूँ
मुझे विश्वास है कुछ लोग ज़रूर प्रयोग करेंगे और मुझे बतायेंगे भी
क्या आप वैकेशन के इस समय का उपयोग मैं तीन सुझाव देता हूँ उसमें से तीनों करें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तीन में से एक करने का प्रयास करें
ये देखें कि न्यू एक्सपीरियंस हो प्रयास करें कि न्यू स्किल का अवसर लें कोशिश करें कि जिसके विषय में न कभी सुना है न देखा है न सोचा है न जानते हैं फिर भी वहाँ जाने का मन करता है और चले जायें
न्यू प्लेसेस न्यू exper
ences न्यू स्किल्स
कभीकभार किसी चीज को टीवी पर देखना या किताब में पढ़ना या परिचितों से सुनना और उसी चीज़ को स्वयं अनुभव करना तो दोनों में आसमानज़मीन का अंतर होता है
मैं आपसे आग्रह करूँगा इस वैकेशन में जहाँ भी आपकी जिज्ञासा है उसे जानने के लिये कोशिश कीजिये नया एक्सपेरिमेंट कीजिये
एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव हो थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ले जाने वाला हो
हम मध्यमवर्गीय परिवार के हैं सुखी परिवार के हैं
क्या दोस्तो कभी मन करता है कि रिजर्वेशन किये बिना रेलवे के सेकंड क्लास में टिकेट लेकर के चढ़ जाएँ कमसेकम 24 घंटे का सफ़र करें
क्या अनुभव आता है
उन पैसेंजरों की बातें क्या हैं वो स्टेशन पर उतर कर क्या करते हैं शायद सालभर में जो सीख नहीं पाते हैं उस 24 घंटे की विथआउट रिजर्वेशन वाली भीड़भाड़ वाली ट्रेन में सोने को भी न मिले खड़ेखड़े जाना पड़े
कभी तो अनुभव कीजिये
मैं ये नहीं कहता हूँ बारबार करिये एकआध बार तो करिये
शाम का समय हो अपना फुटबॉल ले करके वॉलीबॉल ले करके या कोई भी खेलकूद का साधन ले करके तद्दन ग़रीब बस्ती में चले जाएँ
उन ग़रीब बालकों के साथ ख़ुद खेलिये आप देखिये शायद् ज़िंदगी में खेल का आनंद पहले कभी नहीं मिला होगा ऐसा आपको मिलेगा
समाज में इस प्रकार की ज़िंदगी गुज़ारने वाले बच्चों को जब आपके साथ खेलने का अवसर मिलेगा आपने सोचा है उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा
और मैं विश्वास करता हूँ एक बार जायेंगे बारबार जाने का मन कर जाएगा
ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा
कई वॉलंटियर आर्गेनाइजेशंस सेवा के काम करते रहते हैं
आप तो गूगल गुरु से जुड़े हुए हैं उस पर ढूँढिए
किसी ऐसे आर्गेनाइजेशंस के साथ 15 दिन 20 दिन के लिये जुड़ जाइये चले जाइये जंगलों में चले जाइये
कभीकभी बहुत समर कैम्प लगते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लगते हैं कई प्रकार के विकास के लिये लगते हैं उसमें शरीक़ हो सकते हैं
लेकिन साथसाथ कभी आपको लगता है कि आपने ऐसे समर कैम्प किये हों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया हो
आप बिना पैसे लिये समाज के उन लोगों के पास पहुँचे जिनको ऐसा अवसर नहीं है और जो आपने सीखा है उनको सिखायें
कैसे किया जा सकता है आप उनको सिखा सकते हैं
मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नोलॉजी दूरियाँ कम करने के लिये आई टेक्नोलॉजी सीमायें समाप्त करने के लिये आई लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि एक ही घर में छः लोग एक ही कमरे में बैठें हों लेकिन दूरियाँ इतनी हों कि कल्पना ही नहीं कर सकते
क्यों हर कोई टेक्नोलॉजी से कहीं और बसी हो गया है
सामूहिकता भी एक संस्कार है सामूहिकता एक शक्ति है
दूसरा मैंने कहा कि स्किल क्या आपका मन नहीं करता कि आप कुछ नया सीखें आज स्पर्द्धा का युग है
एक्जामिनेशन में इतने डूबे हुए रहते हैं
उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिये खप जाते हैं खो जाते हैं
वैकेशन में भी कोई न कोई कोचिंग क्लास लगा रहता है अगली एक्साम की चिंता रहती है
कभीकभी डर लगता है कि रोबोट तो नहीं हो रही हमारी युवापीढ़ी मशीन की तरह तो ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही
दोस्तो जीवन में बहुतकुछ बनने के सपने अच्छी बात है कुछ कर गुज़रने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिये
लेकिन ये भी देखिये कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या टेक्नोलॉजी से दूर ख़ुद के साथ समय गुज़ारने का प्रयास
संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं कोई नई भाषा के 550 वाक्य सीख रहे हैं तमिल हो तेलुगु हो असमिया हो बांगला हो मलयालम हो गुजराती हो मराठी हो पंजाबी हो
कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है और नज़र करें तो हमारे अगलबगल में ही कोई न कोई सिखाने वाला मिल सकता है
स्विमिंग नहीं आता तो स्विमिंग सीखें ड्राइंग करें भले उत्तम ड्राइंग नहीं आएगा लेकिन कुछ तो कागज़ पर हाथ लगाने की कोशिश करें
आपका भीतर की जो संवेदना है वो प्रकट होने लग जाएगी
कभीकभी छोटेछोटे काम जिसको हम कहते हैं हमें क्यों न मन करे हम सीखें आपको कार ड्राइविंग तो सीखने का मन करता है क्या कभी ऑटोरिक्शा सीखने का मन करता है क्या आप साइकिल तो चला लेते हैं लेकिन थ्रीव्हीलर वाली साइकिल जो लोगों को ले कर के जाते हैं कभी चलाने की कोशिश की है क्या आप देखें ये सारे नये प्रयोग ये स्किल ऐसी है आपको आनंद भी देगी और जीवन को एक दायरे में जो बाँध दिया है न उससे आपको बाहर निकाल देगी
आउट ओएफ बॉक्स कुछ करिये दोस्तो
ज़िंदगी बनाने का यही तो अवसर होता है
आप सोचते होंगे कि सारी एक्साम समाप्त हो जाए कैरियर के नये पड़ाव पर जाऊँगा तब सीखूँगा तो वो तो मौका नहीं आएगा
फिर आप दूसरी झंझट में पड़ जायेंगे और इसलिये मैं आपसे कहूँगा अगर आपको जादू सीखने का शौक हो तो ताश के पत्तों की जादू सीखिए
अपने यारदोस्तों को जादू दिखाते रहिये
कुछनकुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास कीजिये उससे आपको ज़रूर लाभ होगा
आपके भीतर की मानवीय शक्तियों को चेतना मिलेगी
विकास के लिये बहुत अच्छा अवसर बनेगा
मैं अपने अनुभव से कहता हूँ दुनिया को देखने से जितना सीखनेसमझने को मिलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते
नयेनये स्थान नयेनये शहर नयेनये नगर नयेनये गाँव नयेनये इलाके
लेकिन जाने से पहले कहाँ जा रहें उसका अभ्यास और जा करके एक जिज्ञासु की तरह उसे देखना समझना लोगों से चर्चा करना उनसे पूछना ये अगर प्रयास किया तो उसे देखने का आनंद कुछ और होगा
आप ज़रूर कोशिश कीजिये और तय कीजिये ट्रैवेलिंग ज्यादा न करें एक स्थान पर जाकर कर के तीन दिन चार दिन लगाइये फिर दूसरे स्थान पर जाइये वहाँ तीन दिन चार दिन लगाइये इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
मैं चाहूँगा और ये भी सही है कि आप जब जा रहे हैं तो मुझे तस्वीर भी शेयर कीजिये
क्या नया देखा कहाँ गए थे आप इनक्रेडिब्लेइंडिया का उपयोग कर के अपने इन अनुभवों को शेयर कीजिये
दोस्तो इस बार भारत सरकार ने भी आपके लिये बड़ा अच्छा अवसर दिया है
नई पीढ़ी तो नकद से करीबकरीब मुक्त ही हो रही है
उसको कैश की ज़रूरत नहीं है
वो डिजिटल करेंसी में विश्वास करने लग गई है
आप तो करते हैं लेकिन इसी योजना से आप कमाई भी कर सकते हैं आपने सोचा है
भारत सरकार की एक योजना है
अगर भीम App जो कि आप डाउनलोड करते होंगे आप उपयोग भी करते होंगे
लेकिन किसी और को रेफर करें किसी और को जोड़ें और वो नया व्यक्ति अगर तीन ट्रांजैक्शन करे आर्थिक कारोबार तीन बार करे तो इस काम को करने के लिये आपको 10 रुपये की कमाई होती है
आपके खाते में सरकार की तरफ से 10 रुपये जमा हो जायेगा
अगर दिन में आपने 20 लोगों से करवा लिया तो आप शाम होतेहोते 200 रुपये कमा लेंगे
व्यापारियों को भी कमाई हो सकती है विद्यार्थियों को भी कमाई हो सकती है
और ये योजना 14 अक्टूबर तक है
डिजिटल इंडिया बनाने में आपका योगदान होगा
न्यू इंडिया के आप एक प्रहरी बन जाएँगे तो वैकेशन का वैकेशन और कमाई की कमाई
रेफर ईयर्न
आमतौर पर हमारे देश में विप कल्चर के प्रति एक नफ़रत का माहौल है लेकिन ये इतना गहरा है ये मुझे अभीअभी अनुभव हुआ
जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा कर के नहीं घूमेगा
वो एक प्रकार से विप कल्चर का सिम्बोल बन गया था लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो वेहिकल पर लगती थी गाड़ी पर लगती थी लेकिन धीरेधीरेधीरे वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर विप कल्चर पनप चुका है
अभी तो लाल बत्ती गई है इसके लिये कोई ये तो दावा नहीं कर पायेगा कि दिमाग़ में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी
मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोन कॉल आया
ख़ैर उस फोन में उन्होंने आशंका भी व्यक्त की है लेकिन इस समय इस फोन कॉल से इतना अंदाज आता है कि सामान्य मानवी ये चीजें पसंद नहीं करता है
उसे दूरी महसूस होती है
नमस्कार प्रधामंत्री जी मैं शिवा चौबे बोल रही हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से
मैं गवर्नमेंट के रेड बीकॉन बन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ
मैंने एक लाइन पढ़ी न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा था एवरी इंडियन इस आ विप ओन आ रोड ये सुन के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और खुशी भी हुई कि आज मेरा टाइम भी उतना ही ज़रूरी है
मुझे ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना है और मुझे किसी के लिये रुकना भी नहीं है
तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस डिसाइजन के लिये
और ये जो आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है इसमें हमारा देश ही नहीं साफ़ हो रहा है हमारी सड़कों से V
P की दादागिरी भी साफ हो रही है तो उसके लिये धन्यवाद
सरकारी निर्णय से लाल बत्ती का जाना वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है लेकिन मन से भी हमें प्रयत्नपूर्वक इसे निकालना है
हम सब मिल कर के जागरूक प्रयास करेंगे तो निकल सकता है
न्यू इंडिया का हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि देश में विप की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े
और जब मैं V
P के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूँ तो मेरा भाव स्पष्ट है एवरी पर्सन इस इम्पोर्टेंट हर व्यक्ति का महत्व है हर व्यक्ति का माहात्म्य है
सवासौ करोड़ देशवासियों का महत्व हम स्वीकार करें सवासौ करोड़ देशवासियों का माहात्म्य स्वीकार करें तो महान सपनों को पूरा करने के लिये कितनी बड़ी शक्ति एकजुट हो जाएगी
हम सबने मिलकर के करना है
मेरे प्यारे देशवासियों मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इतिहास को हमारी संस्कृतियों को हमारी परम्पराओं को बारबार याद करते रहें
उससे हमें ऊर्जा मिलती है प्रेरणा मिलती है
इस वर्ष हम सवासौ करोड़ देशवासी संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहे हैं
किसीनकिसी कारणवश हम इतने बंध गये इतने छोटे हो गये कि ज्यादाज्यादा शताब्दियों तक का ही विचार करते रहे
दुनिया के अन्य देशों के लिये तो शताब्दी का बड़ा महत्व होगा
लेकिन भारत इतना पुरातन राष्ट्र है कि उसके नसीब में हज़ार साल और हज़ार साल से भी पुरानी यादों को मनाने का अवसर हमें मिला है
एक हज़ार साल पहले का समाज कैसा होगा सोच कैसी होगी थोड़ी कल्पना तो कीजिये
आज भी सामाजिक रुढियों को तोड़ कर के निकलना हो तो कितनी दिक्कत होती है
एक हज़ार साल पहले कैसा होता होगा
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि रामानुजाचार्य जी ने समाज में जो बुराइयाँ थी ऊँचनीच का भाव था छूतअछूत का भाव था जातिवाद का भाव था इसके खिलाफ़ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी
स्वयं ने अपने आचरण द्वारा समाज जिनको अछूत मानता था उनको गले लगाया था
हज़ार साल पहले उनके मंदिर प्रवेश के लिये उन्होंने आंदोलन किये थे और सफलतापूर्वक मंदिर प्रवेश करवाये थे
हम कितने भाग्यवान हैं कि हर युग में हमारे समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिये हमारे समाज में से ही महापुरुष पैदा हुए हैं
संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहे हैं तब सामाजिक एकता के लिये संगठन में शक्ति है इस भाव को जगाने के लिये उनसे हम प्रेरणा लें
भारत सरकार भी कल 1 मई को संत रामानुजाचार्य जी की स्मृति में एक स्टैंप रिलीज करने जा रही है
मैं संत रामानुजाचार्य जी को आदर पूर्वक नमन करता हूँ श्रृद्धासुमन अर्पित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों कल 1 मई का एक और भी महत्व है
दुनिया के कई भागों में उसे श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है
और जब श्रमिक दिवस की बात आती है लेबर की चर्चा होती है लेबरर्स की चर्चा होती है तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की याद आना बहुत स्वाभाविक है
और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज श्रमिकों को जो सहुलियतें मिली हैं जो आदर मिला है उसके लिये हम बाबा साहब के आभारी हैं
श्रमिकों के कल्याण के लिये बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है
आज जब मैं बाबा साहब की बात करता हूँ संत रामानुजाचार्य जी की बात करता हूँ तो 12वीं सदी के कर्नाटक के महान संत और सामाजिक सुधारक जगत गुरु बसवेश्वर जी की भी याद आती है
कल ही मुझे एक समारोह में जाने का अवसर मिला
उनके वचनामृत के संग्रह को लोकार्पण का वो अवसर था
12वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में उन्होंने श्रम श्रमिक उस पर गहन विचार रखे हैं
कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा था काय कवे कैलास उसका अर्थ होता है आप अपने परिश्रम से ही भगवान शिव के घर कैलाश की प्राप्ति कर सकते हैं यानि कि कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है
दूसरे शब्दों में कहें तो श्रम ही शिव है
मैं बारबार श्रमेवजयते की बात करता हूँ
डिग्निटी ओएफ लेबर की बात करता हूँ
मुझे बराबर याद है भारतीय मज़दूर संघ के जनक और चिन्तक जिन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत चिंतन किया ऐसे श्रीमान दत्तोपन्त ठेंगड़ी कहा करते थे एक तरफ़ माओवाद से प्रेरित विचार था कि दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ और दत्तोपन्त ठेंगड़ी कहते थे मज़दूरों आओ दुनिया को एक करें
एक तरफ़ कहा जाता था वर्कर्स ओएफ थे वर्ल्ड यूनाइट
भारतीय चिंतन से निकली हुई विचारधारा को ले करके दत्तोपन्त ठेंगड़ी कहा करते थे वर्कर्स यूनाइट थे वर्ल्ड
आज जब श्रमिकों की बात करता हूँ तो दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी को याद करना बहुत स्वाभाविक है
मेरे प्यारे देशवासियों कुछ दिन के बाद हम बुद्ध पूर्णिमा मनायेंगे
विश्वभर में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग उत्सव मनाते हैं
विश्व आज जिन समस्याओं से गुज़र रहा है हिंसा युद्ध विनाशलीला शस्त्रों की स्पर्द्धा जब ये वातावरण देखते हैं तो तब बुद्ध के विचार बहुत ही रिलेवेंट लगते हैं
और भारत में तो अशोक का जीवन युद्ध से बुद्ध की यात्रा का उत्तम प्रतीक है
मेरा सौभाग्य है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस महान पर्व पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वेसक डे मनाया जाता है
इस वर्ष ये श्रीलंका में हो रहा है
इस पवित्र पर्व पर मुझे श्रीलंका में भगवान बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित करने का एक अवसर मिलेगा
उनकी यादों को ताज़ा करने का अवसर मिलेगा
मेरे प्यारे देशवासियों भारत में हमेशा सबका साथसबका विकास इसी मंत्र को ले करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है
और जब हम सबका साथसबका विकास कहते हैं तो वो सिर्फ़ भारत के अन्दर ही नहीं वैश्विक परिवेश में भी है
और ख़ास करके हमारे अड़ोसपड़ोस देशों के लिए भी है
हमारे अड़ोसपड़ोस के देशों का साथ भी हो हमारे अड़ोसपड़ोस के देशों का विकास भी हो
अनेक प्रकल्प चलते हैं
5 मई को भारत दक्षिणएशिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा
इस सैटेलाइट की क्षमता तथा इससे जुड़ी सुविधायें दक्षिणएशिया के आर्थिक तथा डेवलपमेंटल प्राथमिकताओं को पूरा करने में काफ़ी मदद करेगीं
चाहे नैचुरल रिसोर्स मैपिंग करने की बात हो टेलीमेडिसिन की बात हो एड्यूकेशन का क्षेत्र हो या इत कनेक्टिविटी हो पियोपल टो पियोपल संपर्क का प्रयास हो
साउथ एएसआईए का यह उपग्रह हमारे पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ने में पूरा सहायक होगा
पूरे दक्षिणएशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिये भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है अनमोल नज़राना है
दक्षिणएशिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये एक उपयुक्त उदाहरण है
दक्षिण एशियाई देशों जो कि साउथ As
आ सैटेलाइट से जुड़े हैं मैं उन सबका इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिये स्वागत करता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों गर्मी बहुत है अपनों को भी संभालिये अपने को भी संभालिये
बहुतबहुत शुभकामनाएं धन्यवाद